इस फोटो में मुझे बहोत सारे बदक दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में मुझे कुछ औरतें दिखाई दे रही हैं।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

इस फोटो में मुझे साइकिलें दिखाई दे रही हैं।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

इस फोटो में मुझे एक सीमेंट दिखाई दे रही है।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

इस फोटो में मुझे बिल्डिंग दिखाई दे रहीं हैं।

इस फोटो में मुझे रोड दिखाई दे रहा हैं।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

इस फोटो में मुझे रोड दिखाइ दे रही है।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

इस फोटो में मुझे ये आदमी दिखाई दे रहे है।

इस फोटो में मुझे भगवान की मूर्ति दिखाई दे रही है।

इस फोटो में मुझे पंडित जी दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में मुझे खिड़की दिखाई दे रही है।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

इस फोटो में मुझे गेट दिखाई दे रहा है।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

इस फोटो मे मुझे बहता हुआ झरना दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में मुझे बहोत सारा पानी दिखाई दे रहा है।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

इस फोटो में मुझे गार्ड दिखाई दे रहा है।